यहा बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं और मिरर लगे हुए है।

यहाँ पे एक-- दुकान है और दुकान में समान रखा हुआ है।

यहां पे एक बैंक है बैंक के बाहर बहोत सारे--